इसमें कुछ गायें खड़ी दिखाई दे रही है एक बड़ा पौधा दिखाई दे रहा है एक टेंट लगा हुआ है जिसके नीचे गाय बांधते हैं गऊशाला जैसा दिखाई पड़ रहा है यह अच्छी स्कूल है।

यह एक शॉप हैं जिसके आगे बोर्ड पर सेवग जी साड़ीज एम्पोरियम लिखा हुआ है इसके अंदर बहोत सारी साड़ियाँ रखीं हुई हैं।

और ये भी हैं और आसपास में बहुत सारे साड़ियां सेंटर और ऐसे भी हैं खुदरा विक्रेता --

आसपास दीवारें हैं पेड़ पौधे उगे हुए हैं और एक जिम है और जिम के अंदर एक आदमी ट्रेनिंग कर रहा है।

और पानी बहुत ही अच्छा है जोकि केरी के अंदर लगा हुआ है और पास में पट्ठे भीजे हुए हैं।

इसके अंदर बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं।

एक खंभे पर एक लाइट लगी हुई है और आसमान नीला दिखाई दे रहा है और आसपास में बहुत सारे नीले घर हैं।

यह एक झोपड़ी दिखाई दे रही है जिसके आगे बहुत सारे बेड़ियां है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं।

यहां बहुत सारे खुली बड़ी दिखाई दे रही है जहां पर रेड फूल है और एक पेड़ दिखाई दे रहा --

अल्ट्रा सीमेंट के गट्टे पड़े हैं और इसमें बहुत सारे खांचे बने हुए हैं जिनके अंदर सामान रखा हुआ है।